सूर्य उदय हुआ दिख रहा है सफेद सफेद बादल दिख रहा है।

जिम करने का बड़ा बड़ा मशीन दिख रहा है।

कॉलेज के बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

सैलून बाल काट रहा है नाई--